घरा है दवाखाने वगैरह सब है शायद वहाँ पर--

झाड़ा वगैरह भी है यहाँ पर तीन चार बसा है यहाँ पर ये बस स्टैंड है एक--

ये एक ये एक स्टेशनरी या बुक गिफ्ट्स की शॉप दिख रही है तोफों की दुकान दिख रही है यहां पे बच्चियों के गुड़ियां और बॅट्स वगैरह भी है।

और बहुत सारे अलग अलग किस्म के गुड़िया है यहाँ पर--

ये एक मॉल है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं अंदर वहाँ पीछे कारा वगैरह रखे हुए हैं।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

एक बिल्डिंग है शायद ये बिल्डिंग है बड़ी सी बिल्डिंग है झाड़ा वगैरह है।

और रेड कलर का कुछ है पैकेट में यहाँ पे--

टी_वी रियलिटी है सभी सड़क है और यहां पे सही शोरूम है।

है और ये फर्शी है पूरी ये एक रेलवे स्टेशन है।

और यहाँ पर लोग भी दिख रहे हैं थोड़े बहुत और फूलों से सजावट है।

यहाँ पे इंट सजावट तो बहुत ही अच्छी करी गई यहाँ पे करी गई है सजावट--

ये एक बैंक है और बैंक है बैंक का नाम क्या है? ये--